यह बड़ी बिल्डिंग है जो सफेद रंग की बीच में एक मंदिर बना हुआ है सफेद रंग की जो सफेद रंग की आसमान है अगल-बगल पेड़-पौधे है जो हरे रंग की पत्तियां है छोटा सा घर है जो भूरे रंग का है बहुत सारे दरवाजे बने हुए है और खिड़कियां है।

पीले रंग की बहोत सारी कुर्सी लगाई गई है सफ़ेद रंग की और लाल रंग के फीते लगाए गए है ऊपर के साइड पे लाइट जल रही है सफ़ेद रंग की बीच में टाट बिछा हुआ है जो कत्थई रंग का टाट है।

बगल में कुर्सी का आदमी बैठे हुआ है एक आदमी खड़ा है जो टोपी पहना हुआ ऊपर के साइड पे लाइट जल रही है सफ़ेद रंग की बाहर साइड में भी कुर्सी रखी गई है जो पीले रंग --

और हरे रंग की पत्तियां और सफेद नीले रंग की आसमान है बड़े-बड़े झाड़े नीचे साइड पे भूरे रंग की घर से कुछ सूखे हुए पत्ते गिरे हुए है।

सामने में छोटे-छोटे मिल बने हुए है जिसके ऊपर घास रखी गई है सफेद रंग का छत है।

एता अलमारी बना हुआ भूरे रंग का किले लगाए गए है बगल में एक छोटा सा अलमारी बना हुआ है जिसपे काँच लगी हुई है टेबुल बना हुआ कथेई रंग का निचे साइड में फर्श किया गया है।

बत्रंगी रंग के पेंट किये गए सामने पेड़ है जो आधे रंग के पत्तिया है।

साइड पे घड़ा है जो एक सफ़ेद रंग का पेंट किया गया हुआ है बगल में खम्बा गड़ी हुई है जिससे ऊपर लाइट गई उसके ऊपर से भी लाइट गई हुई है बड़ी सी झाड़ है जो हरी रंग की पत्तिया है।

इनमे खुच घने जंगल है बहुत सारे पेड़ लगाये गये है।

सामने स्टेज एक गेट बना हुआ है कथे रंग का पर्दा लगा हुआ है गुब्बारे रखे गए है लाल रंग के और सफेद रंग के दीवाल पे भी गुब्बारे लगे हुए है सफेद रंग के ऊपर के साइड पर नीले रंग की हरे रंग की लाइट जल रही है।

साइड पे पर्दे लगे गए हैं सफ़ेद रंग की तीन टंकी रखी गयी है काले रंग की| सामने साइड पे एक हरे रंग की घांस है एक छोटा - सा गेट बना हुआ है|

एक बड़ा सा स्टेज बना हुआ है जो लाल रंग के पि-पीले रंग के परदे बने हुए है ऊपर के साइड पे पर्दा लगा हुआ है नीचे के साइड पे कुर्सी रखी गई है।

सामने एक बरा सा घर है जो सफेद रंग का है सफेद रंग की भूरी रंग की मिट्टी है अगल-बगल झाङे है जो हरे रंग की पत्तीया है बगल मे एक लोहे का परदा खरा हुआ है सफेद और नीले रंग की आसमानी है।

साइड पे खेत है जो एक आदमी काम कर रहा है सफ़ेद रंग का टीशर्ट पेहने हुए है काले रंग का पेंट पेहने हुए है बोरी का रंग सफ़ेद है।

और काले की रंग की आसमान है कुछ इ फसल लगी है जो हरे रंग की है भूरे रंग की मिट्टी है और आदमी ने सफी लपेटा हुआ है जो लाल रंग की है।

सफ़ेद और हरे रंग की और सामने एक शटर लगा हुआ है सफ़ेद रंग की बगल में सीढ़ी है।

कुर्सी रखी गई सफेद और नीले रंग की कुर्सी है नीचे की साइड पे हरी रंग की टाट बिछी हुई है।